इस फोटो में मुझे दुकाने दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे पानी का झरना दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे मंडप दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे--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

इस फोटो में मुझे मैकेनिक की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे खेत दिखाई दे रहा है।